यह एक फैक्ट्री का चित्र है।

इस चित्र में कच्चा मकान दिखाई दे रहा है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है उसके सर पे टोकरी दिखाई दे रही है।

यह एक कारखाने का चित्र है जिसमें एक अभियंता दिखाई दे रहा है उसके सर पर सफेद टोपी दिखाई दे रही है।

यह चित्र एक मंदिर का चित्र है। जिसमे भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही है।

यहाँ पर ए.टी.एम. यंत्र दिखाई दे रहा है।

यह चित्र चिकित्सालय का चित्र है।

इस चित्र में दो कन्या और दो लड़के नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं।

आरती करते व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।